इस फोटो में सामने दीवार है और वाइट कलर की टाइल लगी हुई है।

यहाँ पर काफी बड़िया जो है कमरा दिखाया गया है।

खिड़कियां दिखाई दे रही हैं एक टेबल है दरवाजा है।

और यहां पर एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।